कपड़ा भी टंगा के वहां में दिखाई में रहा है। वहां में मैप भी चपका के दिखाई दे रहा है।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

चित्र में स्टेट बैंक का ए_टी_एम दिखाई मिल रहा है।

यूनिफॉर्म ड्रेस में एक लडकी भी दिखाई मिल रहा है।

नीचे में बहुत सारा कचरा भी दिखाई मिल रहा है।

गेट के सामने में छोटा सा पेड़ और इलेक्ट्रिक लाइट पोल भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहोत सारा इलेक्ट्रिक वायर भी दिखाई दे रहा है।

मिरर के अंदर एक लड़का सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है।

साइड में बड़ा बड़ा बिल्डिंगस में दिखाई दे रहा है। पार्क में प्लांट और फूलों के दिखाई दे रहा है।

सामने में एक लड़की झाड़ू मारते हुए दिखाई मिल रहा है।

जिनमें एक रस्ता दिखाई दे रहा है रस्ता में बकरी भी चल के दिखाएं मिल रहा है।

सामने मे बहुत सारा बाइक भी दिखाई मिल रहा है।

दुकान में आलू भी दिखाई दे रहा है और साइड में बहोत सारा इंटा भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में बिस्तर लोग भी दिखाई मिल रहा है।

टेबल के ऊपर बहुत सारा टिशू पेपर भी रखा हुआ है।

घर लोग भी दिखाई मिल रहा है।

और चम्मच लोग भी रखा हुआ है।

पिक्चर मे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहे हैं।

व्हाइट कलर का शर्ट और जींस पहन के दिखाई दे रहा है सामने में दो भी दिखाई दे रहा है।

विंडो के ऊपर में वेंटिलेटर भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का चावल बैग लोग भी दिखाई दे रहा है ऊपर में लाइट भी जल के दिखाई दे रहा है।

और इंसान एक भी चल के दिखाई दे रहा है।

इमेज गैरेज दिखाई पड़ रहा है।

पिक्चर में ग्राउंड दिखाई दे रहे। ग्राउंड में कारपेट बिछा के लड़के लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहे है।

में दो आदमी कॉफी पीते हुए दिखाई दे रहा है।

पीछे का वॉल मे टी_वी स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर में एक जग और कप भी दिखाई दे रहे हैं।

एक वॉल कलेंडर भी दिखाई मिल रहा है।

अंदर में एक बकेट और मग भी दिखाई मिल रहा है।

दूसरे कॉर्नर में कारपेट और डोर मेट लोग भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिखाई दे रहें--

अंदर में बहुत सारा मोबाइल फोन्स को दिखाई दे रहा है।

उधर में एक अलग घर लोग भी दिखाई दे रहा है।